एल भी दिखाई दे रहा है दो ठो एक ब्लैक कलर का और एक ग्रीन कलर का।

बड़ा वाला पत्थर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में और पेड़ लोग फ्रेस फ्रेस में बड़ा बड़ा पेड़ लोग दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से--

और शर्ट व्हाइट कलर है फेस को ढक के है और बैकग्राउंड में पिंक कलर से डेकोरेशन करना दिखाई दे रहा है।

और पिंक और वाइट कलर में कपड़ा दिखाई दे रहा है रेड साइड में एक लड़का बैठ के रेड टी शर्ट पहन के।

ये दुकान का अंदर वाइट है ऊपर में थोड़ा पिंक पिंक से दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में कुछ फॉर्म का तरह दिखाई दे रहा है।

टीना से बना के है टीना और बैंबू से और बनाना का पेड़ दिखाई दे रहा है।

डिस्पोजिंग ग्लास दिखाई दे रहे टिशू पेपर दिखाई दे रहे।

जहां पे बहुत सारा बलूंस से डेकोरेशन करके है बैलून में रिबन भी लगा के है।

लंबा लंबा से और बैलून रेड और वाइट कलर है ये दुकान के अंदर पूरा ब्लैक से दिखाई दे रहे वाल वाइट कलर है।

दरवाजा के लिए ग्लास लगा के है।

और ये घर व्हाइट कलर है रात का नजारा है।

राइट साइड में रोड लोग दिखाई दे रहा हैं।

ये पिक्चर में दुकान दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में बैंक दिखाई दे रहे--

आगे में एक ग्रीन साड़ी पहन के लड़की दिखाई दे रही--

और ये मिट्टी रेड रेड से दिखाई दे रहे है येलो से।

दिवाल वाइट कलर है और नीचे में कुछ ब्ल्यू और वाइट कलर में दिख रहे सामान।

और आसमान दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में और पेड़ दिखाई दे रहा है राइट साइड में ब्रांच --

पिंक कलर है पर्दा रेड कलर है।

ड्रम ब्लू कलर है और दो आके है।

रिबन्स में पिंक कलर ब्ल्यू कलर येलो कलर में दिखाई दे रहा है बीच बीच में लाइट जला के है येलो कलर से।

कार्पेट के लिए ग्रीन कलर बिछा के है और पोल्स लोग के व्हाइट कलर है उसमे लाइट लोग जला के है।

और डाइनिंग टेबल बहुत सारा रखे हैं व्हाईट कलर का और चेयर भी पूरा राउंड राउंड रखे हैं ब्राऊन कलर में दिखाई दे रहा है।

कुछ फोटो फ्रेम लगा के है।

साइड साइड मे वाटरफॉल का साइड मे पेड़ लोग ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे है बरा बरा पेड़ लोग।

दरवाजा में वाइट कलर का पर्दा लगा के है टीना भी दिखाई दे रहा है ऊपर में।

और बाहर में एक लड़का जाते हुए दिखाई दे रहा है वो ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन के है।

ऊपर में व्हाइट व्हाइट से दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू से और टावर दिखाई दे रहा है लंबा से।

ये पिक्चर मे बरा वाला बस दिखाई दे रहे है येलो कलर है।

ये गवर्नमेंट व्हीकल दिखाई दे रहा है बाहर में एक लड़का है वाइट शर्ट पहन के है।

ये छोटा छोटा पेड़ लोग दिखाई दे रहे हैं दूर दूर में काला काला से।

उगी फुगी से मौसम खराब है।

और ये बल्ब येलो कलर है वाइट कलर में भी दिखाई दे रहा है।

और यहां में कुछ माइक से बात करते हुए दिखाई दे रहा हैं एक लड़की साड़ी ब्ल्यू कलर का पहन के हैं।

और साइड साइड में घास लोग ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहा है।

कलरफुल दिखाई दे रहा है।